यह बैठा हुआ है एक महिला भी है एक उधर भी है अनाउंसमेंट करते हुए दिखा

और यहां पे भी आदमी खड़े है खड़े हुए कोई फोटो खींचा रही है स्टाइल मार के भी नीचे रखा है।

यहाँ पे भी आदमी सब लोग काम कर रहें हैं यहाँ लिंटर हो गया है।